यहां मुझे एक झंडा दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे टेबल दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे कुछ खिड़कियां दिखाई दे रही--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

इस तस्वीर में मुझे चार पुरुष दिखाई दे रहे है।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

इस तस्वीर में मुझे उगता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे सोलर पैनल दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर मे मुझे कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे है।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

यहां मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहा हैं।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

इस तस्वीर मे मुझे कुछ टेबल दिखाई दे रही है।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

यहां मुझे एक पुरुष दिखाई दे रहा हैं।